आ बोतल सब रखा हुआ है बांस है बांस पे एक मड़ई है।

अच्छा लग रहा है काफी सब लोग बैठे --

बहुत बढ़िया अच्छा लगा एकदम फैली जगह है हर चीज अच्छा लगा।

पेट्रोल पम्प है तेल भरा ने आता है और बढ़िया हरियाली जगह है |

अच्छा लग रहा है बत्ती है जग है खूब बढ़िया फूल से सजाया हुआ है बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है।